सामने कुछ मंदिर नज़र आ रहे हैं और अंदर में कोई मूर्ति नज़र आ रही है और ये नीचे कुछ चढ़ा हुआ है।